तीन में से दो व्यक्तियों ने ल ब्लैक टी-शर्ट पेहनी है एक ने वाइट टी-शर्ट पेहनी है।

फ्लोर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं सामने की ओर हमें रोड नजर आ रही है ।

जिस पर डेप्थ ऑफ पोस्ट इंडिया लिखा हुआ है।

ऊपर छत व्हाइट रंग की दिख रही है।

इस फ़ोटो मे हमे एक मैदान नजर आ रहा है मैदान के बीच मे हमे अलग-अलग लोग खड़े नजर आ रहे है जो की खेलते हुए नजर आ रहे है।

साथ मे उन गेप्स मे हमे बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस फ़ोटो में हमें अलग-अलग मकान दिखाइ दे रहा है सामने एक बड़ा मकान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें कुछ लोग बैठ के खड़े होके वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

घर का रंग व्हाइट और रेड कलर से पुता हुआ दिख रहा है।